साथ ही साथ मनोरंजन के लिए भी किताबें इनके पास उपलब्ध है।

इसमें एक व्यक्ति जोकि कार मैकेनिक है और कार की जांच कर रहा है।

और इस कार का एक पहिया बाहर निकला हुआ है।

यह प्रिंटिंग मशीन एक ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट की जाती है। प्रिंटिंग मशीन में शादी के कार्ड बैनर पोस्टर वगैरह छपते हैं।

यहाँ का स्टाफ़ काफी अच्छा है। यदि कोई समान नहीं मिलता है तो यहाँ के स्टाफ से मदद ले सकते हैं।

यह एक कार वाशिंग सेंटर हैं यहाँ पर गाड़ियों की साफ सफाई की जाती हैं |

जिसमे से एक पाइप के माध्यम से पानी प्रेशर से निकलता है और आग को बुझाता है इस गाड़ी का कलर लाल होता है।

यह एक कंप्यूटर इंस्टिट्यूट है। यहाँ पर कंप्यूटर --

यह एक ऑडिटोरीअम है। ऑडिटोरीअम मे फंक्शन्स सेमिनार्स किए जाते हैं। ऑडिटोरीअम का साइज़ काफी बड़ा है।